ग्राउंड का र-रंग ग्रीन है बहुत ही अच्छा है कुछ पेड़-पौधे भी है।

और मूर्ति को जो ड्रेस पहना गया है वो बहोत बढ़िया है लाजवाब है ब्यूटीफुल है बहुत ही अच्छी है।

खूब सुन्दर लाइटिंग से सजावत की गयी है बहोत ही अच्छी है ब्यूटीफुल है ।

ओवरऑल ये दृश्य ब्यूटीफुल है बहोत ही बढ़िया है ।

एक टीचर भी है अपना एडवाइस स्टूडेंट के साथ शेयर कर रही है।

और ये स्टेट बैंक बोहोत बड़ा है और बढ़िया भी है ।

देखने में लाजवाब लग रहे है ब्यूटीफुल लग रहे --

और जो कलर है बोहोत डिफरेंट है।

यहाँ पे मुझे बाइक बिकने का एक दोकान देखने को मिल रही है।